ये मॉल है मारवाड़ी करके लिखा हुआ है।

अटी यहाँ पे सभी स्टेच्यू को सूट वगैरा पहनाया गया हैं फ्रॉक सूट --

और यहां मम सीढ़ियां बनी हुई हैं गेट है।

और बहोत ही शानदार शोरूम लग रहा है और बहोत ही अच्छा लोकेशन लग रहा है यहां पे।

फील्ड में क्रिकेट में फील्डिंग कर रहे हैं फील्डर .

जाली टाइप का रखा गया है की --

ये बुक सेंटर की दुकान है यहां पे--

ये स्कूल है स्कूल में बोर्ड लगा हुआ है .

अंदर गेट है गेट अंदर का भी गेट बंद है।

एक कलर के और ऊपर से व्हाइट लाइट भी जल रहा--

अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं इधर-उधर देख रहे हैं काउंटर पे भी खड़े हैं लोग।

और बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है न्यू कार अ ब --

और यहां पे दोनों तरफ से स्तंभ बनाया गया स्तंभ पे--

वहां पे गोला गोल गोल बना के और उसमें खंभा खड़ा करके गोल सर्कल बनाया गया तिल्लियां बनाई गई .

किया गया है और नीचे ये रोड काफी सुंदर है और किनारे किनारे बाउंड्री है .

कपड़े पहन के अ ड्रेस वाइट ड्रेस और पीला --

और पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं दूर पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और ये टेबल पे पानी रखा है इस टेबल पे कुछ मछली जैसे--

और ये उधर अंधेरा है गद्दे में कुछ सामान वगैरह है और इधर खूब काम कर रहे हैं अपना।

और दो तीन लोग बैठे हुए हैं बे उसको करने के लिए।

ऊपर लोग बैठे हुए है चढ़ के रैक पे नीचे बांस बल्ली वगैरा बिखरा हुआ है।

ये काफी सारा यहां पे मशीन रखा गया है और ये हार्डवेयर का मशीन है।

यहां मंदिर है और मंदिर बना हुआ है।

और यह किनारे किनारे बाउंड्री लगी हुई है बीच में बैठने का जगह बनाया गया है।

ये मेरिज हॉल है इसको डेकोरेशन किया गया है।

टेबल पे बिछाया गया है टेबल चेयर भी लगाया गया है।

और एक यहाँ बहोत लोग भीं हैं अंदर--

ये हॉस्पिटल का ओ_टी रूम है यहां पे --

ऑपरेशन वगैरह के लिए पेशेंट को लाया जाता है काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं।

और वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है माता रानी का और बहुत ही साफ सुथरा ये रूम है।

एस_टी सोल्जर का बोर्ड लगा हुआ है यहां पे--

सैमसंग सैमसंग का बोर्ड लगा हुआ है यहां पे --

करने के लिए बहुत बड़े भी पेड़ पौधे हैं।

और यहां एक सफेद कुर्सी लगी हुई है .

कॉल सेट्रीग स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है यहां पे--

यहां पे ये कंपा लगा हुआ है बिजली टाइप का और --

और काफी सारे बास बलि नीचे लगे हुए अंधेरा है अभी सेंटरिंग --

आंधी इधर भी और बड़े बड़े भी पेड़ पौधे हैं और दूर जाके--

मशीनरी सामान वगैरह सब सोलर के --

साइड में एक आ बंदा खड़ा हुआ है छोटे बच्चें को लेके।

और इधर दीवाल पे हरे भरे झाड़ियां भी हैं पत्ते वगैरह।

बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं दूर पेड़ पौधे भी हैं पहाड़ी --